आ एक बहुत सुन्दर-सा फिगर दिखाया गया है जो की देखने में काफी सुन्दर और मस्त हैऔर यह फिगर बहुत बड़ा और बहुत अच्छा और बहुत सुन्दर सजाबट भी किया गया है।

कोई दो लड़का नीचे देख रहा है। जो की बहुत सारा मोटरसाइकिल खड़ा है और बहुत बड़ा घर भी दिखाई पड़ रहा है। जो की यह घर जो बहुत बड़ा और बहुत सुंदर और बहुत बढियाँ और बहुत बड़ा भी है। जो की देखने में काफी संदर और मस्त --

नीचे में भी बहुत सारा रोड जैसा दिखाई पड़ रहा है जो कि उसको बहुत मेहनत से और बहुत पैसा खर्चा करके बनाया गया दिखने में बहुत बड़ा और बहुत सुन्दर है |

इसको बहुत बड़ा और बहुत पैसा खर्च करके बनाया गया है और बगल में बहुत सारा भी पौधे भी दिख रहे हैं पेड़-पौधे जो की बहुत सुन्दर और बहुत अच्छा और बहुत हरे-भरी दिखाई पड़ --

सुंदर सा फिगर दिखाया गया है जो की दिखने में काफी सुंदर और मस्त है और यह फिगर में --

और यह फिगर कोई कुँए का दिखाया गया है जो कि बहुत सारा कछुए हैं यहाँ पे और दिखने में ये कछुआ बहुत सुन्दर और बहुत मस्त है और अगल बगल में पेड़ पौधे भी लगे हैं जो कि बहुत हरे भरे और बहुत सुंदर और बहुत अच्छे लग रहे है दिखने में ।